ये भी एक पार्क या गार्डन कह सकते हैं जो की काफी बड़ा है और इसमें बहुत सारे झूले वगेरह लगे हुए हैं| जैसे सामने एक लटकने के लिए इ इक और खंबा ग गढ़ा हुआ है।

पीछे जिराफ़ के लिए घर भी बना हुआ है और इसकी बॉउन्ड्री लोहा के खंबे से किया हुआ है| पीछे गाछ --

ये काफी सुंदर गार्डन का एरिया है और इसमें काफी रंग-बिरंगे फूल हैं जैसे के --

सामने भी छोटे-छोटे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं| रंग-बिरंगे पीछे घर भी है चारों तरफ और बड़े-बड़े गाछ भी दिख रहे हैं पानी का पाइप भी।

और बेलून भी तिरंगा के शेप में ही है और सामने छे चेयर लगे हुए हैं| काफी सुंदर और छे तीन टेबल है उसपे पानी की बोटल भी रखी हुई है।

ये एक गार्डन एरिया है जोकी काफी बड़ा है और काफी खूबसूरत है और ये इसमें दो छोटे-छोटे खजूर गाछ जोकी काफी सुंदर लग रहे हैं।

काफी खंडर-सा कोई महल लग रहा है| ऐसा लग रहा कि ये काफी पुराना है और ऐतिहासिक है| इसमें छोटे-छोटे बहुत सारे स्टेचू भी बने हुए हैं।

और पीछे ग्रीन कलर का दीवार है और गाय के खाने को लिए नाद है और बाल्टी है और एक पेड़ बड़ा-सा है उसपे सीढ़ी लगी हुई है और दूर एक खेत में चाचा जी काम करते नजर आ रहे हैं|

कार भी लगी हुई ब्लैक कलर की छोटी-सी ऐसा लग रहा है कोई सुजुकी कंपनी का कार है और ये काफी बडा-सा गोडाउन लग रहा है और इसमें एक पानी का पाइप भी है और नल भी लगा हुआ--

और किनारे पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं और एक जहाज बड़ा-सा भी दिख रहा है जिसे रस्सी से बांध कर इसे किनारे पे बांधे हुआ है| और सूरज भी बहुत चमकदार पानी में चमक रहा है।

और इसमें एक बड़ा-सा पानी के लिए फुवारा लगा हुआ है जोकी इस घास को हरा-भरा बनाता है और काफी सुंदर लग रहा है।

रास्ता है और रास्ते के बगल में बोहोत सारी कार खड़ी है और रंग-बिरंगी कार है और रोड पे भी दो कार जा रही है जो की एक क्रीम कलर की है।